नीचे काई है सड़क पर और पिच सड़क है और यहाँ पर पीछे की तरफ एक बाइक --

नाओ है नाओ में दोनों तरफ दो व्यक्ति बैठे हुए हैं | उनके हाथो में च्पू है ।

और घर है खंबा लगा हुआ है खंबे से लगे हुए तारे निकली हुई है | ट्रांस---

ए और गाड़ी है सफेद रंग की है ग्रे रंग ग्रे कलर की है और---

यहाँ पर एक भेंस खड़ा हुआ है | उसके साथ एक उसका बच --

खिड़कियाँ लगी हुई है उपर तरफ शेड लगा हुआ है ज --

और स्टेट दाढ़ी है मुछ है | पि --